जो के गोल का कार का है इसके साथ है की सामने एक मंदिर टाइप का बना हुआ है जो की हरे रंग का है बाकी अस--

यह द्रश्य एक दुकान का है जहाँ पे कुछ सामान रखे हुए है।

यह द्रश्य एक लीची का है लीची बहुत स लाल है और लीची प्लेट में रखी है बहुत सारी लीचियाँ है।

जैसे एक खदान का है जहाँ पर ट्रको में खदान हो रहा है साथ ही कई सारे ट्रक खड़े हुए है कई जे.सी.बी भी खड़ी हुई है।

और यहाँ पे एक कई मशीने के पहिये भी पड़े हुए है उसके साथ कुछ डम्पर भी रखे हुए हैं बहुत ही अच्छा थ--

यह है नज़ारा एक जिम सेंटर का लग रहा है जिम सेंटर के अंदर कही सारी मशीन जिम करने के सम्बंधित रखी हुई है।

वो उठाया हुआ है साथी दो लोग उसपे काम कर रहे है उसको बनाने का पहिये भी कुछ पड़े हुए है बगल में एक कार भी खड़ी हुई है।

यह दृश्य एक मंदिर का है लग रघ है जहा पेकुछ लोग सेल्फी ले रहे है कुछ लोग खड़े है।